सामने हमे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसे एक सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है और सामने की और दो कुर्सियां रखी हुई है और एक टेबल रखा हुआ है जिसमे टेबल में एक माइक्रोस्कोप और एक--

सनितिज़ेर भी रखा हुए है और पीछे की और एक बड़ा सा नीले कलर का पर्दा भी लगा हुए है।

हमारे पास में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिस में से कई सारी ट्रांसमिशन लाइने गई हुए है आसपास कई मकाने बनी है।